और सामने गेट लगा हुआ है और जहाँ देखे तो दीवारे भी काफी पुरानी लग रही है और काफी मोटी भी लग रही है।

देखिये उपर देखे तो एक पुल भी बनाया हुआ है। नदी के पास कुछ लोग भी खड़े हुए है और एक स्टेज के पास एक फ्लैक्स रखा हुआ है।

जो कि इसकी उसको को देख रहा हेै और एक जो आदमी बैठा हुआ है वह फोन पर बात कर रहा है। देखे तो सामने उसके एक शीशा भी लगा हुआ है। ऊपर देखे तो एक एल.सी.डी. भी लगा हुआ है।

देखे तो पीछे अ ग्राउंड में पीछे कुछ लोग भी बैठे हुए है जो कि बात कर रहे है और एक पाइप आ रहा है जो कि पानी जिसमें ये पानी निकलता--

तो ऊपर देखे तो एक बैनर लगा हुआ है। जहाँ जिसमें कि एक लेडिस का फोटो है शायद किसी और भाषा में लिखा हुआ है।

ट्रेन के पीछे एक पानी की टंकी भी है और साइड में एक कोने में पानी की टंकी है और एक रूम भी है ऊपर।